द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश की कोचिंग है। कोचिंग के बाहर बहोत सारी बाइके और साइकिले है। एक साइकिल पर एक लड़का बैठा है। उसने काले और सफेद रंग का कैप लगाया हुआ है।

एक स्टेशनरी की दुकान है इसमें दो आदमी बैठे हुए हैं। एक आदमी जोकि सेल्फी ले रहा है। उसके चश्मा भी लगा हुआ है।

यह एक मकान बन रहा हैलिंटर परने की तैयारी की जा रही है बहुत से लोहै के सरियो का जाल बिछाया हुआ है कुछ लोग उसके ऊपर खड़े है।

यह एक हाज़ीपुर जंक्शन नाम से स्टेशन है।